लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई है।

हैं और एक गुलदस्ता भी रखा हुआ है।

जहां एक इंजन रखा हुआ --

और कुछ आदमी भी बैठे--

यहां एक बगीचा है जहां पेड़ लगे हुए हैं।